यहाँ मोटर सायकल हैस्कुटी खड़ी है बहुत सी स्कुटी है आदमी है बाइ बाइक खडी हैं।

बैंक का गेट है ऊपर बैंक के बना हुआ है उस पर हरे रंग की दिवार दिख रही है सफ़ेद दीवार दिख --

इस के पिलीधर पीली जमीन हैं पेड़ का रंग थोड़ा पि अ गुलाबी हैं।

लोहे की परात पड़ी है। बजरी है।